इसके आसपास कुछ एक रेलवे दिखाई दे रही है।

जिसके आस पास मुझे हरे भरे पेड़ और झाड़ियां दिख रही हैं यहां पर मुझे तीन मैच लेटर बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ कार्स हैं टूटी हुई हैं तो कुछ बेकार--

और सुंदर सुंदर पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे बिल्डिंगस नजर आ रहे--

रस्ता भी दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ कार्स खड़ी हुई हैं।

तस्वीर में मुझे कुछ सब्जियां दिखाई दे रही हैं जिन्हें कुछ पौनों के अंदर रखा है कुछ को खुला रखा है यहां मुझे टमाटर गाजर।

इस तस्वीर में मुझे एक मिठाई की दुकान नजर आ रही है इस मिठाई की दुकान में मुझे एक पंखा भी दिखाई दे रहा है और एक--

मिठाई तौलने की मशीन नजर आ रही है यहां पे मुझे काजू कतली बर्फी बेसन और लड्डू दिखाई दे रहे हैं।

रंग बिरंगे फूल लगे हैं और दो चेयर्स भी लगाई--